यहाँ कुछ चटनी में रखा हुआ है।

कुछ-कुछ सुचना और चिपका हुआ है।

इनमा पानी हवा पहाड़ है और साइड ओ साइड ।

मुर्लीधरी है राघव ओकर साइड मा हवय नीचे मयूर है।